यहां आसमान कलर काला है।

बहोत सारे गुब्बारे लगे हुए उनका कलर पीला और लाल है एक व्यक्ति बैठा कपड़ों का कलर सफ़ेद --

एक व्यक्ति बाइक पकड़े खड़ा है बाइक का कलर काला है एक व्यक्ति सामने खड़ा --

सामने गाड़ी दिख रही है ।

एक और दिख रहा है और और एक व्यक्ति जा रहा है।

सुबह सूरज निकल रहा है लाल और पिला --

मोबाइल्स देख रहे है उसका कलर ग्रीन है दो लड़के देख रहे हैं उनका कलर सफेद बी --

और यहां में एक दीवार दिख रही है उसका कलर पीला है एक व्यक्ति बैठा है कपड़ों का कलर पर्पल और स्लेटी है।

सामने एक दीवाल नजर आ रही है है।

का कलर क्रीम है और के कपड़ों का कलर काला है चेयर का कलर लाल है।